पीछे भी कुछ व्यक्ति है जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है और साथ में वेट मशीन भी रखी हुई है। दोनों तरफ आगे की तरफ कुछ बल्ब छत पे लगे हुए नज़र आ रहे है।

सामने की तरफ ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। जिसके ऊपर ओनिडा और टाटा स्काइ लिखा हुआ है। नीचे की तरफ बजाज फाइनेंसर ई.एम.आई लिखा हुआ है। नीचे संगीता इलेक्ट्रॉनिक है।

इसके नीचे दुकान का शीशा नज़र आ रहा है। जिस पे "काफी इलेक्ट्रॉनिक की आइटमें रखी हुई है बाहर भी कुछ बॉक्स रखे हैं बाहर की रफ तीन बाइकें खड़ी हैं और सामने एक महिला खड़ी है मास्क लेकर।

सामने की तरफ एक होल कमरा नज़र आ रहा है जहाँ कुर्सी और मेज लगे हुए हैं। कुर्सियों पर दो व्यक्ति बैठे है। सामने भी एक व्यक्ति है जिसके बीच में एक कप रखा हुआ है।

शीशा लगा हुआ है साइड में गुलाबी रंग का पर्दा नजर आ रहा है ऊपर एक लाइट और पंखा भी लगा हुआ है।

सामने की तरफ सेल्फो में काफ़ी सारी किताबें लगी हुई हैं।

यहाँ सामने की तरफ एक पिल्लर नज़र आ रहा है सीमेंट का जिसके ऊपर सरिये हैं उसके ऊपर व्यक्ति खड़ा है पाइप लेकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी है।

यहाँ एक लाल रंग के टी-शर्ट में पहना हुआ व्यक्ति उसको देख रहा है कार का नीचे का टायर खुला हुआ है।

यहाँ सामने की तरफ एक जिम नजर आ रही है जहाँ पर काफी मशीनें रखी हुई हैं।

ऊपर पंडाल के तरफ वहाँं डेकोरेशन रिबन लगे हुए है लाइट का भी काफी बंदोबस्त नज़र आ रहा है आस-पास पीछे की तरफ पेड़ भी लगे हुए हैं।